एक चर्च है जिसमे ईशा मसिह सामने लटके हुए हैं।

हाँ और एक सफेद सी दिबार है साइन बना है आस पास मैरुन कलर के बोर्ड है।

मोर है जो की डान नाच रहा है जिसने अपने पर पुरे फैला लिए है नीचे पथरीला सा रोड़ है जिसके ऊपर बहुत बड़े-बड़े पत्थर है ऊपर से एक पेड़ की डंडी गई है जो की सीद में है।

धूल-मट्टी कीड़े-मकोड़े हो रहे हैं पानी बिल्कुल भी साफ नहीं है ऐसा लग रहा है एक नाला है।

एक बहोत बड़ा फर्श है जिसके ऊपर मछली पड़ी हुई है वाइट और ब्लैक रेड और ब्लैक कलर की एक डोरी जा रही है कुछ मछलिया कटी पिटी है कुछ साबूत है।

अ वो एकदम खड़े है सीधे अजीब से लग रहे है वो जानवर पीछे एक बोहोत बड़े पेड़ है काँटों वाले उसके पीछे दीवार है जिस पे पीले कलर की पैंट --

औग उसकी परछाईं जो दिख रही है ग्राउंड में हरी-हरी घास है।

एक बहोत बड़ा दरवाजा है वहा पे काम चल रहा है निचे बहुत सारा सामान है धूल-धूल जैसी हो रही है और बड़े दरवाज़े पे बहोत सारे डिज़ाइन बने हुए है सिल्वर गोल्डन जिसका कलर क़त्थई है।

एक डांस इंस्टिट्यूट है जिसमे एक मास्टर है जो की बहुत सारे बच्चों को डांस सीखा रहा है जिसमे कुछ लड़के है कुछ लड़की है |

नीला कैरेट रखा हुआ ठेला हैं जिसके ऊपर लकड़ी लगी हुई हैं पीछे से एक आदमी है जो दिख --

औरतें हैं जिनके सरो पे टोकरी लगी हुई है जो कि साड़ियाँ पहनी है नीचे से पथरीली जमीन है पीछे से एक साइकिल आ रही है।